हाँ एक साइड गमला रखा हुआ है ऊपर गुब्बारे दिखाई दे रहे है और बलब चल रहा है नीचे टाइल्स लगी हुई है और --

घर भी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर अम्म पेड़ भी दिखाई दे रहे यहाँ पर जल ठहरा हुआ दिखाई दे रहा --